ये हमारी बहुत मदद करता है ये हमारा जो समय बचाता है हम इस एटीएम से पैसे जल्दी निकाल सकते हैं ये एटीएम बहुत बढ़िया है।

और ये देखने में कितना मस्त लग रहा है न। यहाँ लगता है अच्छे-अच्छे खिलौने हैं। अच्छे-अच्छे वोहो --

ये कितने सारे हिरण हैं और ये खाना खा रहे हैं हिरण और ये कितने सुंदर लग रहे हैं हिरण --

ये मशीन बहुत काम आती है ये मशीन बहुत अच्छी है इससे हम दूध के सब तरीके देख सकते हैं।

और ये नजारा कितना सुंदर है यार ये ब्लैक बैक ब्लैक ब्लैक कितना सुंदर लग रहा है और इसके ऊपर जो सन है वो कितना अच्छा लग रहा है अभी और ये पेड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं ये समुंदर के धोर है कितने प्यारे लग रहे हैं।

मेरे आर्किटेक्ट वाले हैं और ये डिजाइनिंग करते हैं बिल्डिंग वगैरह --

ये बुक्शाप है और इस बुक्शाप में कितनी सारी बुकें हैं और इन बुकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है।

ये समुंदर कितना बड़ा है और ये कितना गहरा होगा समुंदर इसमें समुंदर में कितनी सारी मछलियां होंगी और ये नाव --

ये ग्राउन्ड हमारे बहुत काम आता है।

कितना नेक काम कर रहे हैं। ये अंकल बोहोत अच्छे हैं।

यहाँ सब चीज रिपेयर होती हैं यहाँ ऑटो रिपेयर कर रहे हैं।

ये अंकल ऑटो रिपेयर कर रहे हैं। इस ऑटो को नया कर रहे हैं अंकल ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं।

ये बहोत बड़े लग रहे हैं इनका फोटो कितना सुंदर आया हैं। यह तालाब कितना सुंदर आया हैं।

ये एक गुफा है। गुफा का काफी पुरानी है और एक गुफा काफी गहरी काफी लंबी है।

बच्चा कितना अच्छा लग रहा है ये बच्चा फुल फुलवाड़ी की धोर है यहाँ।

यहाँ कितनी भीड़ है इस मेल को कितने सारे जने देखने आए हैं।

ये एक सैलून है इस सैलून में कटिंग बहुत अच्छी होती है ये सैलून वाले बहुत मेहनत करके हमारे बाल काटते हैं ये सैलून वाले भैया।

ये कितनी पुरानी हवेली है यह कितनी डरावनी लग रही है हवेली।

पुरानी हवेली है इस आदमी को डर नई लग रहा।